सामने एक बाइक खड़ी है और रोड उस पार एक कार भी खड़ी है रोड उस पार दो दुकाने है जो कि खुली हुई है।

सामने की ओर एक बाइक है जोकि लाल कलर की पैशन प्रो है।

पीछे के साइड एक बड़ा सा पोल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पोल है।

लेफ्ट साइड में मेडिकल काउंटर बनाया हुआ है जो कि पूरा वुडन से बनाया हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

उसके पीछे एक पोल है और साइड में एक दीवाल है और पीछे साइड भी एक दीवाल है जो कि पीले रंग की है और उसके बगल में एक साइकिल खड़ा है।

राइट साइड में एक ट्रक खड़ा है जिसका नीचे का पार्ट दिख रहा है और जमीन पर छोटे मोटे टुकड़े पत्थर के पड़े हुए हैं।

और एक के साइड के टेबल मे बहोत सारी महिलाएं बैठे हुए हैं।